बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है और भी कई सारे पेड़ दिखाई दे रहे है ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है येलो कलर दिखाई दे --

इस इमेज मे मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप किराने की शॉप दिखाई दे रही है।

रेड कलर येलो कलर ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है कई बॉटल्स दिखाई दे रही हैं ग्रीन कलर कुछ बर्तन रखे हुए हैं काँच का बॉक्स दिखाई --